बड़ा सा जिम दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ मशीनें दिख रही है एक्सरसाइज करने की और कुछ लोग --

इस इमेज में यहां पर देखिएगा दुकाने दिखाई दे रही है और यहां पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही हैं और साइड में देखिएगा काफी सारी दुकानें --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जहां पर लिखा हुआ है जैन --

साइड में देखिएगा एक गेट भी दिख रहा है।

इस इमेज में एक स्कूल की गैलरी दिखाई दे रही है जहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

इस ईमेज में देखिएगा यहां पर दो टंकी दिखाई दे रही है सफेद कलर कि और साइड में एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

रोड पर कार खड़ी है और एक बड़ा सा टेंपो बीच खड़ा हुआ दिख रहा है साइड में कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

चार पांच कार भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

रोड के पास में एक मिनी ट्रक खड़ा हुआ है और एक एक्टिवा भी खड़ा है बोरे में देखिएगा बहुत सारी सब्जी --

अंदर की ओर देखिएगा एक आदमी खड़ा हुआ है ऊपर छत पर एक पंखा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा एक रास्ता दिखाई दे रहा है यह एक जंगल है साइड में देखिएगा बड़ा सा--

कार खड़ी हुई है सीढ़ी भी नजर आ रही है और बोर्ड पे लिखा हुआ है द हाउस आफ कॉफी ।